एक आदमी पेड़ के पास खड़ा है काफी ज्यादा पेड़ इसमें हरे भरे दिखाई दे रहे हैं पेड़ पर हरी पीली पत्तियां दिखाई दे रही हैं।

इसमें एक स्टूडियो दिखाई दे रहा है इसका नाम प्ले स्टूडियो है इसके आगे प्ले वुड विनर --

यह एक चाय की शॉप है जिसके अंदर एक व्यक्ति--

बिल्डिंग में जहां बच्चे बैठे हैं उसके पीछे लोहे की सीढ़ी लगे हुए हैं सामने रेड व्हाइट ब्लू कलर ब्लू कलर किया गया --

एक साइकिल भी खड़ी हुई नजर आ रही है गली गली का रास्ता है जो कच्चा दिखाई दे रहा है रोड नई बनी हुई है।

देश में दरबार प्रबंध सेवा समिति लिखा हुआ है वाइट अक्षरो में ब्लू प्रिंट पे।

जिसके बाहर दो पटरियां दिखाई दे रही हैं सामने ऊपर छत तार दिखाई दे रहे हैं कुछ पोल्स दिखाई दे रहे हैं आसपास काफी ज्यादा घने पेड़ व --

परत से चद्दर टाइप लगाया गया है व्हाइट गेट दिखाई दे रहा है सामने कुछ नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें एक छोटी शॉप दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक नदी का किनारा है जिसपे एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है पीछे बोट नजर आ रहा है जिसके अंदर कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

और तालाब या नदी में सुंदर पानी हमें नजर आ रहा है।

और प्रॉपर व्हाइट रंग अनेक प्रकार के समान इसके ऊपर रखा हुआ है।

एस_के लेटेस्ट हेयर स्टाइल रनमेर बीकानेर यह शॉप काफी बड़ी है।

यह एक गार्डन है जिसके अंदर कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं।